यह तस्वीर में एक शेड दिख रहा है नीचे इसमें गाडियाँ खड़ी दिख रही है जो सफेद रंग की है साइड में इसमें जनरेटर दिख रहा है ।

साइड में इसमें हरियाली घास दिख रही है ऊपर इसमें आसमान नज़र आ रहा है साइड में इसके लोहे के पूल दिख रहे है इसमें लाईट लगी हुई है।

यह तस्वीर मे एक ब्रिज दिख रहा है इसमें नीचे की तरफ तालाब नजर आ रहा है ऊपर इसमें आसमान दिख रहा है ब्रिज में एक ट्रेन जाती हुई नजर आ रही है साइड मे इसमें पेड़ दिख रहा है।

सामने कुछ व्यक्ति खड़े हुए है ऊपर ये लोहे का शेड बना हुआ है जो सफेद रंग से पेंट है।

महिलाएँ साड़ी पहनी हुई है एक छोटा बच्चा भी है।

और इसमें सामने तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं साइकिल भी खड़ी हुई है ।